सामने बाउंड्री पर कुछ बड़ी बड़े पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मैंस वेयर लिखा हुआ है।

सामने एक डमी खड़ा हुआ है जिसके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है।

हर तरफ से रेलिंग हो रखी है रेलिंग काले रंग की है।

एक बड़ी पतंग दिखाई दे रही है जो आकाश में उड़ रही है।

सामने की तरफ दो क्रेट और दिख रही है जो खिड़की के पास रखी हुई है।

दरवाजे लगी हुई दिख रहे हैं जो की दोनों तरफ लग रहे हैं।

ग्राउंड में बहुत सारी घास पड़ी हुई दिखाई दे रही है। जिसमें कुछ पीली और कुछ हरि घास है।

फोटो में एक रोड दिखाई दे रही है। जिसमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

एक लाल मैट बिछाई हुई है और उसके ऊपर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।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

इस फोटो में एक स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमे कुछ बच्चे नहाते हुए दिखाई दे रहे है।

एस_बी_आई का बोड नीले रंग का दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

उन्होंने छाता पकड़ा हुआ है सबके सर पर टोपी लगी हुई है।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर होटल गेटवे लिखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक बड़ासा रूम दिख रहा है जिसमें एक कुर्सी पड़ी हुई है और एक मेज पड़ी हुई है।

इस फोटो में सामने कमरा दिख रहा है जिस पर हरे रंग का रंग हो रखा है।

और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ऊपर की तरफ एक बक्सा टंगा हुआ दिख रहा है दीवार पर।

दोनों ने एक बड़ी सी जैकेट पहन रखी है जो लाल कलर की है।

आगे की तरफ कुछ बड़े बड़े खंभे दिख रहे हैं जो की सफेद और लाल रंग के हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है।

पीछे बहोत सारे पेड़ खड़े हुए हैं सामने एक दरवाजा दिख रहा है जो नीले और सफेद रंग का है।

एक रैक रैकों के पीछे रखी हुई है जिसमें कुछ किताबें रखी हुई हैं।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है जिसमें कुछ शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं।

फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की एक बुजुर्ग आदमी को रोड पार कर रहा है।

इस फोटो में एक घर दिखाया गया है जिसके ऊपर एक बड़ी सी टीन पड़ी हुई है।

सामने की तरफ बर्फ बनाने वाली एक मशीन लगी हुई है।